ठेलिया रखी दिख रही हैं एक पर्पल कलर का एक ब्लू कलर का ठेलिया में लाइट लगी हुई दिख रही है।

सामने हमको टेबल रखी हुई दिख रही है टेबल में बहुत सारे बुक रखी हुई दिख रही है दुकान दिख रहे हैं और --

येलो कलर का भी पोस्टर लगा हुआ दिख रहा है रेलिंग दिख रही है ब्लैक कलर की शटर दिख रही है मेहरून कलर --

एक आ टेबिल रखा हुआ है टेबिल पे बहुत सारा सामान रखा हुआ है।

बेंच दिख रही है कुर्सी दिख रही है बहोत सारे लोग बैठे हुए दिख रहै है।

एक हॉल दिखा रही है हॉल में एक कारपेट बिछा हुआ है मेरून कलर का एक लड़का खड़ा हुआ है अ हाथ में और--

डमबल रखा हुआ है एक सीडी दिख रही है रेड कलर की मशीन दिख रही है।

एक पत्थर की चट्टान दिख रही है जिसमे हल्के-हल्के घांस उगे हुई दिख रहे है।

और एक मूर्ति में में दो हाथ बने हुए दिख रहे है ऊपर रैलिंग दिख रही है पाइप लगे हुए दिख रहे है तार--

एक हॉल दिख रहा है हॉल पे एक टेबिल दिख रही है इस्टेप्लेर दिख रहा है एक पेपर दिख रहा है पेन दिख रहा है।

और बोहोत सारे तार लगे हुए दिख रहे है सीढ़ी दिख रही है दुकान दिख रही है बड़े-बड़े पेड़-पौधे दिख रहे है।

और यहाँ पे मेहरूम कलर का पर्दा भी लगा हुआ दिख रहा है।

उ दरवाज़े दिख रहे है ब्लैक कलर का ऊपर रैलिंग लगी हुई दिख रही है ऊपर तार भी लगे हुए दिख रहे है बादल दिख रहा हैं।

सामने अ खम्भा दिख रहा है और दीवार दिख रही जिसमे महरून कलर का पेंट किया हुआ है।